यहा एक पेट्रोल पम्प है जिसकी दो मशीने रखी हुई है। तथा बगल मे एक चेयर रखी है।

तथा आस पास बहुत सारे बैग वा झोले रखे हुए हैं।

यह एक ग्रोसरी शॉप है जहां बहुत सारे आईटम अलमारी में जमा है तो बहुत सारी सामान शॉप के बाहर रखे हुए व कुछ सामान हेंगर में टंगे हुए --

यह एक अ रोड निकला हुआ है इसके गड्ढे मे पानी भरा हुआ है।

तथा आस-पास दीवार से बाउंड्री बनाई गई है। एक